एक मौटर साइकिल पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे एक साइकिल जाती हुई दिखाई दे रही है।

यह एक सरकारी भवन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर जनता पंचायत--

कुछ सब्जी की दुकान की दिखाई दे रही है आस-पास में पेड़ दिखाई दे रहे है।

यह एक प्रट्रोल पंप दिखाई दे रहा है प्रट्रोल पंप पर एक ट्रक रखा दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के नीचे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।